यहां एक बिल्डिंग है बिल्डिंग तीन चार मंजिला है इसमें दो खी चार खिड़की है।

ये ऐ एक दुकान है दुकान में आगे यहाँ आदमी बैठा हुआ है आदमी व्हाईट कलर का पैंट --

ये एक दुकान है यहाँ पे दो बच्चियाँ खड़ी हैं एक लड़का इधर खड़ा है एक लड़की उधर खड़ा है।

आगे एक आदमी हाथ में माइक पकड़े खड़ा हुआ है लाल कलर का टोपी पहना हुआ है साइड में एक लड़की पीली कलर का फ्रॉक पहनी हुई है उस पे।

इधर प्लाई रखा हुआ है जंगल बहुत घना है।

बिल्डिंग में मीटर लगा हुआ है सामने सीधी है लेडिस ब्लैक कलर की बुर्का पहनी हुई--

सामने ब्लू कलर का लेंस है बीच में नाव छोड़ा गया हुआ है काली कलर की लकड़ी है।

उसके नीचे एक टेबल है टेबल के बगल में कुर्सी पे एक चाचा बैठे हुए हैं इधर पंडित जी बैठे --

यह एक स्कूल का दृश्य है स्कूल के बगल में बहोत सारी भैंसे चर रही है।

जिसका कलर स्काई हैं ऊपर में बहोत सारे फल हैं उसमें से एक फल केला भी है।

यह एक सब्जी मार्केट का दृश्य है जिसमें एक चाचा इधर बैठ के गमछा लिए हुए बैठे हुए हैं।

यह एक गौशाले का दृश्य है जिसमें चार गाये हैं जिसमें से पहला गाय भूरा कलर का दूसरा काला कलर का है।

यह एक पार्क का दृश्य जिसमें भूरे कलर रख के जमीन पे हरा कलर का मैट बिछाया गया हुआ उसमें बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

इसके आगे थोड़ा रेलिंग है रेलिंग के आगे बहुत सारे आदमी खड़ा होके देख रहे हैं और फोटो खींच रहें इधर भी एक कटा हुआ पेड़ का टहनी रखा हुआ --

यह एक मच्छी मंडी का सीन है जहां पे बहुत सारे मछुआरे बैठे हुए हैं और कुछ मछुआरे खरीदने के लिए आए हुए हैं।

नीचे सीढ़ी है लोहे की इस साइड में एक आदमी बैठा हुआ है खड़ा है और नीचे एक साइकिल लगा हुआ है।

यह एक रेस्टोरेंट का सीन है जिसमें सामने ऊपर दीवार पे रंग बिरंगे चित्र लगे हुए हैं और ऊपर पंखा लगा हुआ है।

व्हाइट कलर का सूट और चश्मा लगा ली है पीछे रेलिंग का पुल का पुल का रेलिंग स्काई कलर का है और नीचे पीलर --

बहुत बड़ा पार्क है पार्क के बीचों बीच रस्ता है रस्ता के कोना पर एगो पेड़ है।

इधर तार के पेर बहुत हैं छोटा-छोटा भी बहुत पेर हैं और सामने बिल्डिंग है।

टी शर्ट पहिनले वोकरा बगल में एक आदमी हाथ बान के खड़ा है बाहर फ्रॉक है ऊपर में पोस्टर पे एगो चप्पल के छाप है अंदर कुर्सी लागल है।

पूरा नीच्चे एगो आदमी खरा है उसके पीछे एगो शटर बंद है पीछे लाइट आ रहा है और इधर माला लगा हुआ है एगो पीला कलर का लाल कलर का बोड है।

की चंपारण हार्डवेयर है डीलर का ऊपर बोर्ड लगा हुआ है उस साइड सीमेंट का बोट है।

और नीचे ऊ साइकिल अलग अलग हो रहा--